एक व्यक्ती बाइक पर जा रहा है जिसके पास बैग है कुछ रोड के साइड में पेड़ लगे हुए हैं एक बिल्डिंग दिख रही है जिसका कलर पिंक है।

यह एक मेडिकल शोप है इसमें बहुत सारा सामान रखा है जैसे कि दवाई गोली आदि परफ्यूम शेम्पू कैंची दिख रही है।

यहाँ पर दो व्यक्ति दिख रहे है एक व्यक्ति के पास रेड कलर का बैग है पीछे की साइड में एक वेयरहाउस बना है उस --

इसका कलर वाइट एंड ब्लू हैं दो पेड़ दिख रहें हैं दो तीन खम्बे खड़े हुए हैं आगे जगह खाली पड़ी हुई हैं।

यहां पर एक मकान दिख रहा है जिसका कलर ग्रीन एंड व्हाइट है बगल में एक मंदिर है मंदिर के पास एक --

झंडी लगी हुई है रेलिंगे लगी हुई है मंदिर के पास रेलिंग लगी हुई है ऊपर झ --